पास में एक चेयर है। चेयर के ऊपर एक तौलिया रखी हुई है और एक --

और यहाँ पर दो गाड़ियां दिख रही है।

पहना है। एक ने स्काई कलर का टी-शर्ट पहना है।

सफेद रंग की है और यहाँ पर झंडे लगे हुए हैं। मस्जिद --

हरे भरे घास भी दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे और --

एक आदमी फ़ोन पे बात कर रहे दो आदमी खड़ा --

फूल वूल भी लगाया गया है। बहोत सारे चेयर भी रखे हुए हैं सामने में।

यहां पर एक चित्र नजर आ रही है।

जिसमें एक सफ़ेद रंग की लम्बी गाड़ी दिख रही है ये गाड़ी पूरे --

फूलो से सजाया गया है। ऐसा लग रहा है। इसमें कोई दूल्हा दुल्हन --

आने वाले है। यहां पर --

एक औरत है जोकि जा रही है हाथ में झोला लिए हुये।

और यहां पर इसके चारो तरफ बहोत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे है।

यहाँ पे एक चित्र नजर आ रहा है मानो ऐसा लग रहा है कोई शॉप --

जिसमें एक फूचके की शॉप हैं।

पुचके की टेले हैं और यहाँ टेले में बहुत सारी फुचके रखे गए हैं।

यहाँ बहुत सारे अनियन कटे हुए है और एक चाट के --

प्लेट भी है जिसमें बहोत सारी चाट है और एक आदमी यहाँ पर खड़े हैं जोकि हाथ में --

ग्रे कलर की है। इसमें सफ़ेद एंड लाल रंग की बा --